यहां पे बच्चे पढ़ाई करते हैं उनकी पढ़ाई की हर टाइप की--

ये एक श्याम सुपर मार्केट है यहां पे--

ये भगवान की तस्वीरें हैं मूर्ति हैं जो शिल्पकारों ने बनायी है इतनी सुन्दर कारीगरी वो करते हैं यहां पे--

अलग अलग भगवान की तस्वीरे इन्होने बनाई है जो यहां पे रैक में रखी हुई हैं।

माहौल बहुत अच्छा रहता है बाहर गार्डेनिंग की हुई है यहां पे लाइटें बहुत सारी सजी हुई हैं।

यह एक पंडरी की दुकान है फैशन साड़ी केंद्र यहां पे तरह तरह की साड़ियां मिलती हैं जो की होलसेल के व्यापारी हैं।

ये लोग योगा कर रहे हैं योगा के स्टेप हैं एक जेंट्स है।

के बारे में चर्चा कर रहे हैं और एक--

चार लोग बैठे हैं एक जल प्रोजेक्ट को--

ये माता की मूर्ति एक औरत ने बनाई हैं।

वो अभी भी कुछ पैरों की तरफ वहाँ पे --

और यहां पे ब्लैक कलर की चेयर में आगे टीचर्स पढ़ा रहे हैं।

मिलती है जिससे हमारी हेल्थ पर अच्छ--

बीचो बीच और यहाँ पे बहोत सुंदर सा--

रेन फॉल हो रहा है जिससे--

जो यहां पे ऑफिस जोन का काम करते हैं।